चारो तरफ पेड़ पौधे हरी पत्ते सफ़ेद नीला आसमान है। --

बगल मे बॉल रखी हुई है जो सफ़ेद रंग की और काले रंग की बॉल है हरे रंग कि घास लगी हुई है और काले रंग कि मिट्ठी है हरे रंग कि पड़दे लगी हुई है।

बड़ासा ग्राउंड है एक साईकल रखी गई है लाल रंग की जो काले रंग की साईकल है लगी हुई है एक घर बना हुआ जो सफ़ेद और कत्थे रंग के पेड़ पौधे हरी पत्तीया है एक घर बना हुआ है।

एक सीडी बनी हुई जो काले रंग की है अलग बगल पेड़ पौधे रही पत्तीया है चटाने जो काले रंग के है बुरे रंग के पत्ते है बड़े बड़े पथर है सफ़ेद नीला आसमान है।

कांचे लगाई गई है और ए_सी लगी हुई है सफ़ेद नीला आशमान है।

एक डाके ये मशीन रखी काफी बड़ी है कथे रंग की बगल मे एक आदमी बैठा जो पीले रंग का शर्ट पहना हुआ है।

वर्क् साइड पे काले रंग की अगल बगल दीवारे है सफ़ेद रंग की काच लगी हुई है नीचे टाईल्स बिछा हुवा है सफ़ेद रंग की और खंबे गड़े हुये है।

एक आदमी जो पाइप को घस रहा है काले रंग की है आदमीने पीला तिरंगा रंग कपड़ा सफ़ेद रंग कपड़ा पहना हुवा है। पीले रंग की टोपी यदि बाल पीले --

और नि पीछे के साइड पे एक भी गैब रखा एक बैग रखा गया है। पानी की बोटल ग्लास रखी गई है। स्टूल बना हुआ नीचे फर्श की गई है। जो सफ़ेद फर्श है।

यहा पे पंखा है। जो काले रंग की पंखे है। नीचे के साइड पे मिट्टी है भुरे रंग की। पटरी बिछी हुई है। बगल मे साइकल रखी गई है। नीले रंग का दीवाल है। एक स्कूटी खड़ी हुई है।

एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। सफ़ेद रंग के बाल्कनी बनी हुई है। गार्डन है। जो हरी घासे है। एक रोड गया हुआ है। सफ़ेद नीला आसमान है।

पेड़ पौधे हरी पत्ते एक छोटासा घर बना हुवा सफ़ेद रंग के नीचे एक साईड पे रोड गया वो नीचे टाइल्स बिछे हुए है सफ़ेद रंग की खंबे गाड़े हुए है। सफ़ेद रंग के सफ़ेद नीला आसमान है।

यहापे एक छोटासा शोरूम है कपडेका बहोत सारी छोटे छोटे बड़े बड़े कपड़े रखे गए है। कपड़ा जो लाल रंग की है।

माने सफ़ेद नीला आसमान है घर बनी हुई है कत्ते और नील रंग की पेड़ पौधे हरी और बडे झाड बनी हुई और बादल छाया हुआ--

सामने से सूर्य निकला हुआ है सफेद नीला आसमान है चारो तरफ पेड़ पौधे है हरी पत्तिया है।